यहाँ पे लाइट भी दिखाई दे रही है।

ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़ -पौधे भी दिखाई दे रहे है मकान भी दिखाई दे रहा है नीचे जमीन भी दिखाई दे रही हैं।

यहाँ भी और कुछ लोग खड़े हुए बी दिखाई दे रह हैं।